यहाँ पर देखिये कितना प्यारा गार्डन हैं जिसमे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं कुछ छोटे--

यहाँ पर देखिये यहाँ एक गेट दिखाई दे रहा हैं उस गेट के अंदर बोहोत सारी बिल्डिंगे भी हैं।

सिमेंट कि और कुछ खजूर के पेड़ भी हैं। कुछ लम्बे लम्बे पेड़--

बॉक्स में भी ऊपर पॅकेटो भी फुलझड़ी वगैरा रखी दिखायी दे रही है।